ये इमेज में मुझे ब्लैकं एंड वाइट तस्वीर दिख रहा है जो --

लोड है फिर एक साइड में एक गेट दिख रहा है बड़ा सा जिसमें पत्ते टंगे हुए है जो सुख चुके है और गेट के ऊ--

ये इमेज में मुझे कछुआ दिख रहा है जो धुप में अपने आप को सेक रहा है इसका अ जो ऊपर का हिस्सा हैं।

छोटे-छोटे घास दिख रहे है और ये इसके सैडो दिख रहे है जमीन में--

साइड में खजूर का पेड़ दिख रहा है एक आदमी है जिसका आंखे नाक दिख रही है जो साइड देख रहा है एक औरत खड़ी है जो गजरा लगाई हुई है।

चीजे बनी हुई है फिर साइड में छोटा-सा घर दिख रहा है फिर बड़े-बड़े दिवारे दिख रही है जो गोल-गोल शेप मे है ग्रीन और--

दिख रहै है जो पीछे मुड़े हुए उधर देख रहै है सीधे देख रहै है।

बॉक्स भी लगे हुए है दो फिर तीन तीन छः चोंगे लगे हुए है।

इस साइड में बहोत सारे लोग है एक आदमी बाइक में जा रहा है उसके पीछे भी कोई बैठा हुआ है एक बिलडिंग दिख रहा है जो बहोत छोटा सा दिख रहा है फिर साइड में कचड़ा दिख रहा है।

फिर बहोत भीड़ है एक आदमी है जो ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ है सबसे आगे दिख रहा है एक बुजुर्ग आदमी है जो चसमा पहना हुआ है फिर पीछे एक बिलडिंग दिख रहा हैं।